यह एक किराने की स्टोर दुकान है इसके अंदर कुछ टॉफियों के डब्बे एक बेंच पे पड़े हैं और उनके ऊपर एक स्कैनर पड़ा है।

यह एक रेलवे स्टेशन है जिसके बीच में से कुछ पटरिया गुजर रहीं हैं जो की खाली है और एक बोर्ड पर --

यह एक शॉप है इसके अंदर कुछ लकड़ी की अलमारियां बनी हुई हैं जिसके अंदर डब्बों के अंदर कुछ स्विच और कुछ तार --

व्हाइट व्हाइट डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं और आस पास में कुछ ग्रीन पत्तियां भी लगी हुई है और आस पास में कुछ खंबे लगे हुए हैं जो की ब्लैक कलर का है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है इसके बाहर सैमसंग का बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और पास वाली दुकान के आगे सोनी का बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है।

पास ही बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो की हरे भरे हैं और उनकी पत्तियां भी दिखाई दे रहे हैं इस पारक में--

यह एक कैफे की तस्वीर है जिसके अंदर कुछ लक्कड़ के कुर्सियां और कुछ टेबल पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जीसके ऊपर --

एक कपड़ा प्रेस कर रहा है एक बेड पर नीले कलर का बेड है और आसपास में कुछ बिजली के बोर्ड लगे हुए हैं।

यह एक शॉप है इसके अंदर बहुत सारे दिल के गुलाब लगे हुए हैं और कुछ पिक्चर्स और --

और आस पास में बहुत सी रात हो रखी है और हरे भरे पेड़ हैं जिनकी पत्तियां भी दिखाई दे रही है और बहुत सारे --

और इसके बाहर एक बाइक खड़ी दिखाई दे रही है और एक अंदर आदमी व्हाइट शर्ट पहने हुए किताबें खरीद रहा है और इसके --

शेड के ऊपर लटक रहे हैं और कुछ अलमारियों के अंदर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और आसपास में कुछ ऑरेंज कलर के और --